और यह देखने में बहोत ही हमें सुन्दर भी लग रहा है और यहां पे कई रंग-बिरंगे लाइट्स भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

और यह सब सब इस डांस को देख रहे है और आनंद ले --

वहाँ नीचे में कई सारे गिट्टी भी गिरे हुए हमें नजर आ रहे हैं ।